चारो साइड से बाउंड्री घेरा हुआ है।

एक सोना का भी दूकान है और एक कपड़ा का दूकान है दो कपड़ा का दूकान है।

और यहाँ पे तराजु रखा हुआ है एक बड़ा सा हाँसू है जिस हाँसू से मछली को काटके बनाया जाता है और फिर जो जिनको लेना होता है वो लेते है ।

ये काउंटर पे डायरी सब रखा हुआ है उस डायरी में सब सिर्फ लाल कवर लगा हुआ है और भगवान का किताब भी है भगवान का कवर भी लगा हुआ है बहुत सुन्दर है ।

ये ई-रिक्शा है जो ई-रिक्शा गरीब लोग जो रोड पे चलाया जाता है जो हमारे घर के रोडों पे जो सड़कों के बजारों में चलता है ये ई-रिक्शा |